यह एक तालाब है जिसका पानी नीला दिख रहा है और यहाँ दो-तीन घर भी दिख रहें है और यह एक जंगल के किनारे है।

और इसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और यहाँ यहाँ यहाँ घांस भी दिख रहे है और यह बहुत सुन्दर दिख रहे है और सुन्दर दिख रहे हैं।